लिबरे ऑफिस writer में inserting images छवियाँ प्रविष्ट पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्नलिखित सीखेंगे
document में एक image file प्रविष्ट करना
writer में tables प्रविष्ट करना
writer में hyperlinks प्रविष्ट करना
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में ubuntu लिनक्स 1004 का उपयोग कर रहे हैं और लिबरे ऑफिस सूट वर्जन 334
हम लिबरे ऑफिस writer में एक image फाइल कैसे प्रविष्ट करते हैं इससे शुरू करेंगे
चलिए अपनी resume odt file open करते हैं
document में एक image प्रविष्ट करने के लिए पहले resume odt document के अंदर click करें
अब मेन्यूबार में insert option पर click करें फिर picture पर click करें और आखिर में from file option पर click करें
आप देखेंगे कि एक insert picture dialog box दिखाई देता है
अब आप location फील्ड में फाइल का नाम लिखकर इमेज चुन सकते हैं यदि आपने इसे अपने सिस्टम में सेव किया हुआ है चूँकि हमने एक भी सेव नहीं की है हम ऑप्शन्स में से इमेज को प्रविष्ट करेंगे जो डिफॉल्ट रूप से प्रदान की जाती हैं
अतः dialog box के बाएँ ओर पर pictures option पर click करें
अब किसी एक images पर click करें और आखिर में open button पर click करें
आप देखेंगे कि image आपके document में प्रविष्ट हो गई है
आप इस image का आकार भी बदल सकते हैं और इसे resume के ऊपर दाएँ कोने पर drag कर सकते हैं
अतः पहले image पर click करें आप देखेंगे कि image पर रंगित handles दिखतें है
किसी एक handles पर cursor रखें और बायाँ mouse button press करें
cursor को drag करके image का आकार बदलें जब आकार बदल जाय image पर click करें और इसे editor के ऊपरी दायें कोने तक drag करें
clipboard या scanner का उपयोग करके और gallery gallery से लेना images प्रविष्ट करने की अन्य प्रचलित पद्धतियाँ हैं
अब हम सीखेंगे कि writer में tables कैसे प्रविष्ट करें
tables लिबरे ऑफिस writer में उपयोगकर्ताओं को उनकी जानकारी को सारणी form में रखने के लिए सक्षम बनाता है
अपने document में table प्रविष्ट करने के लिए आप या तो toolbar में table icon पर click कर सकते हैं और table का आकार चुन सकते हैं या आप यह मेन्यूबार में insert option के माध्यम से कर सकते हैं
अतः heading education details के नीचे table प्रविष्ट करने के लिए cursor को एस heading के नीचे रखें
अब मेन्यूबार में insert menu पर click करें और फिर tables option पर click करें
यह विविध fields के साथ dialog box opens करता है
name field में चलिए table का name देते है resume table
size heading के नीचे चलिए columns की संख्या 2 रखते हैं
rows फील्ड में ऊपरी ऐरो पर क्लिक करें 4 तक rows की संख्या बढ़ाएँअतः columns और rows में अप और डाउन ऐरो का उपयोग करके आप टेबल का आकार बढ़ा या घटा सकते हैं
अब dialog box में autoformat button पर click करें
यह नया dialog box opens करता है जहाँ आप जो प्रविष्ट करना चाहते हैं वह table का प्रारूप चुन सकते हैं
writer प्रारूप चुनने के लिए कई options देता है हम format के अंदर none options पर click करते हैं और फिर ok button पर click करते हैं
फिर से ok button पर click करें
आप देखेंगे कि डैंडिग के नीचे दो columns और चार rows वाला table प्रविष्ट हो गया है
अब हम table के अंदर कोई भी जानकारी सारणी के रूप में लिख सकते हैं
उदहारस्वरूप table के पहले column और पहले row में cell के अंदर click करें
यहाँ हम secondary school examination type करते हैं
अब पास के cell पर click करें और 93 percent लिखें अतः यह दिखाता है कि ramesh के माध्यमिक school की परीक्षा में 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है
वैसे ही हम table में अतिरिक्त शैक्षिक विवरण type कर सकते हैं
cell cell के ठीक नीचे cell cell पर click करें जहाँ हमने secondary school examination टाइप किया है
हम यहाँ higher secondary school examination लिखते हैं और बगल के cell में हम 88 percent score लिखते हैं
अगली cell तक पहुँचने के लिए तीसरी row में पहली cell पर click करें वैकल्पिक row से एक cell से दूसरी cell पर जाने के लिए टैब की press करें
अतः टैब press करें और graduation type करें बगल वाले cell में 75% score type करें आखिरी so में पहली cell पर क्लिक करें post graduation 70% type करें
अंततः आखिरी row में हम पहली cell में post graduation heading और निकटवर्ती cell में 70 percent score type करते हैं
अतः देखेंगे कि table शैक्षिक विवरण के साथ रिज्यूमे में प्रदर्शित हो गया है
चलिए table के आखिरी cell पर cursor रखें
add यदि हम table की आखिरी row के ठीक नीचे एक अतिरिक्त row जोड़ना चाहें तो keyboard पर tab की press करें
आप देखेंगे कि नई row प्रविष्ट हो गई है
table के बायें ओर पर हम phd degree प्राप्त की हुई type करते हैं और दायें ओर पर हम 65% प्राप्तांक type करते हैं
अतः हम देखेंगे कि tab की एक दूसरे के नीचे नई rows को जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है जब cursor आखिरी rows पर रखा गया हो
tab और shift + tab का उपयोग करके table में cell से cell भी संचालन कर सकते हैं
tables में अन्य महत्वपूर्ण विशेषता optimal column widthऑप्शन है जो कि स्वतः cells के कंटेंट्स के अनुसार column की चौड़ाई तय करता है
table के दूसरे या दायें ओर के column में इस विशेषता को लागू करने के लिए पहले click करें और फिर दूसरे column में cursor कहीं भी रखें
अतः चलिए आखिरी cell में text के बाद 65% पर cursor रखें
अब मेन्यूबार में table menu पर click करें और फिर autofit option पर जाएँ
menu में जो screen पर दिख रहा है optimal column width option पर click करें
आप देखेंगे कि column में cells के कंटेंट के अनुकूल column की चौड़ाई स्वतः ही तय होती है
उसी तरह हम table में किसी भी columns के लिए यह कर सकते हैं
आप अपने table के लिए विभिन्न प्रकार के borders borders set कर सकते हैं कोई भी borders न रखने से लेकर सभी आंतरिक और बाहरी borders रखने या आपके table में केवल बाहरी borders रखने के लिए
इसके लिए उपयुक्त option चुनने के लिए मुख्य menu में table टैब और table properties option borders टैब चुनें
आगे हम सीखेंगे कि writer में hyperlinks कैसे बनाए जाते हैं
उपयोगकर्ता hyperlinks का उपयोग hypertext को browse या देखने के लिए करता है
hyperlink document के लिए संदर्भ है कि पाठक स्वयं शुरू कर सकते हैं या वह स्वतः ही शुरू हो जाता है
hyperlink पूरे document को या document में विशिष्ट element को इंगित करता है
file में hyperlink बनाने से पहले हम पहले एक document बनायेंगे जो hyperlink होगा
अतः toolbar मेंnew icon पर click करें
एक नया text document opens होता है अब हम इस नये document में hobbies के लिए table बनाते हैं
अतः हम hobbies heading लिखते हैं
enter की press करें
चलिए एक के नीचे दूसरा कुछ शौक लिखते हैं जैसेlistening to music playing table tennis और painting
चलिए इस file को सेव करें
toolbar में save icon पर click करें name field में file का name hobby type करें
save in folder में down arrow पर click करें और desktopऑप्शन पर click करें अब save button पर click करें
अतः file desktop पर so हो गई है
अब हम इस file को बंद करते हैं चलिए अब resume odt file में hyperlink बनाते हैं जो इस document को open करेगा
अब हम शैक्षिक विवरण युक्त table के नीचे hobbies heading लिखते हैं
hobbies text hyperlink करने के लिए पहले heading hobbies पर cursor ड्रैग करके text चुनें
अब मेन्यूबार में insert menu पर click करें और फिर hyperlink option पर click करें
एक dialog box opens होता है जिसमें internet mails और news document और new document जैसे options हैं
चूँकि हम text document के लिए hyperlink बना रहे हैं हम document option पर click करते हैं
अब path field में open file button पर click करें
नये document पर जाने के लिए dialog box में desktop option पर click करें जिसे हमने बनाया हुआ है
अब hobby odt option पर click करें और फिर open button पर click करें
आप देखेंगे कि file के लिए जगहpath field में प्रविष्ट हो गई है
apply field पर click करें और फिर close button पर click करें
आप देखेंगे कि text hobbies रेखांकित है और यह नीले रंग में है इसलिए text अब hyperlink है
अब heading hobbies पर cursor रखें और control key और left mouse button दोनों को एक साथ press करें
आप देखेंगे कि hobbies युक्त file opens होती है
उसी तरह आप images और websites के लिए भी hyperlinks बना सकते हैं
अब हम लिबरे आफिस writer पर spoken tutorial की समाप्ति पर आते हैं
संक्षिप्त में बताते हैं कि हमने क्या सीखा
document में image file प्रविष्ट करना
writer में table प्रविष्ट करना
writer में hyperlinks प्रविष्ट करना
व्यापक नियतकार्य
practice odt open करें
file में एक image प्रविष्ट करें
2 columns और 3 rows के साथ एक table प्रविष्ट करें
www google com website open करने के लिए hyperlink बनाएँ जब आप file में image पर click करें
निम्नलिखित link पर उपलब्ध video spoken tutorial project का सार देता है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
हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके वर्कशॉप्स कार्यशालाएँआयोजित करते हैं
जो online test pass करते हैं हम उन्हें certificates भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए हमें contact@spokentutorialorg पर संपर्क करें
स्पोकन ट्यूटोरियल टॉकटूअ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी ict के माध्यम से समर्थित किया है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
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद